यहाँ पे एक ग्राउंड दिख रहा है | इस ग्राउंड में कुछ लड़का खेल रहे हैं| इस ग्राउंड में दो चेयर है ।

दो बटल कुछ बैग दिख रहा है| ग्राउंड के चारों तरफ बहुत सारा पेड़ घर दिख रहा है |

यहा एक रूम के अंदर दिख रहा है यहा के इस रूम मे दो बड़ा वाला वाशिंग मशीन है।

दुकान के बाहर में एक साइकिल भी है। दुकान के सा पीछन में एक बड़ा - बड़ा पेड़ दिख रहा है। दुकान के सामने कुछ बेंच रखा हुआ है।

पे एक रोड दिख रहा है। इस रोड में एक बड़ा वाला गड्डी दिख रहा है। गड्डी के आसपास में कुछ बाइक दिख रहा है और साइकिल दिख रहा है।

की एक मंदिर दिख रहा है जिस मंदिर के साइड में कुछ पेड़ दिख रहा है इस मंदिर में एक लाल रंग की पताका उड़ रही है।